सजाया गया है काफी खूबसूरत। यह फूलों से भी सजाया गया है। यहाँ पे लड़का बैठा हुआ है और उसकी मम्मी पापा --

यह सीन काफी खूबसूरत है। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहे हैं और उसके बाद उधर दूर में थोडा सा पहाड़ भी नजर आ रहे हैं और सामने पत्थर भी रखे हुए हैं। यह काफी खूबसूरत जगह है। यह समुन्द्र का --

घरी भी लगा हुआ है रोड के बीचों --

और इ लोग बेठ कर मछली बेच रहे हैं। सामने पैसा त्राजू बटखरा रखे हुए हैं।